यहाँ पर फ्री रूरल हेल्थ कैंप का एक दो बैनर है।

और कुछ लेडीज को पुरुस्कार से सन्मानित किया जा रहा हैं |